बड़ा सा फील्ड है जिसमें बहोत सारे लोग है सामने में पूरा बाउंड्री वॉल है जो की वाइट कलर का है सामने में एक बाइक खड़ा है ब्लैक कलर का दूर में बहोत सारे है।

एक बहुत बड़ा एरिया हैं इस साइड में पूरा काला हैं बहुत सारी झटिया जमी हुई है जो काले है।

नीचे पे ग्रिल लगा हुआ है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसने ग्रीन गंजी पेहनी है ऊपर आसमान वाइट है साइड में घर के कलर लगे है रेड कलर और इस साइड में भी बाउंड्री घेरा है।

और कुछ लंबी लंबी-सी स्कूटी खड़ी हुई हैं और कुछ गछ के डिज़ाइन बने हुए हैं और अंदर में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे है कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं कुछ पिलर है जो व्हाइट हैं उसके ऊपर दिश्ता लग --